ये देखिये यहां पे पो-पोस्ट ऑफिस है यहां पे बहुत बाइक लगा हुआ है यहां पे बहुत तरीके का पेड़ है वहां पे बहुत बढ़िया ए अथी है फूल है बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है यहां पे बहुत मोटरसाइकिल लगा हुआ है यहां पे आदमी जा रहा है।

ये देखिए ये जिम क्लास है ये देखिए जिम क्लास है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे बहुत तरीके के जिम जिम मशीन हैं यहाँ पे बहुत आदमी यहाँ पे अपना बॉडी बना रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

ये भी जिम क्लास जिम की तरह है यहाँ पे दौड़ने वाला है बहुत अच्छा लग रहा है देखने ये वहां पे बहुत तरीके के दौड़ने वाले मशीन लगे हुए हैं वहां पे बहुत अच्छा है यहाँ पे बहुत टाँगे हुए है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में देखिए यहाँ पे आदमी दौड़ भी सकता है कुछ भी कर सकता है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

कार उर सब चलता है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में इसपे दौड़ने में भी बहुत मजा आएगा।

ये देखिये ये रेलवे स्टेशन है यहां पर पटरी लगा हुआ है यहां पर ट्रेन आते जाते रहता है उसमें आदमी बहोत बैठे रहते है।

बहुत अ अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे पोस्टर टांगा हुआ है यहाँ पे कितना कॉस्टली कंप्यूटर है --